सामने दीवार में एक घड़ी लगी हुई है जो वाइट कलर की है जिसका कांटा काला है साइड में बोर्डर काला है सामने में कुछ स्टील कलर की चेयर रखे है लम्बे- लम्बे से तीन लाइन--